सामने एक कमरा दिखाई दे रहा कमरे में एल_ई_डी भी लगी हुई दिखाई दे रही है कमरे की दीवार व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है कमरे में एक बेड भी लगा हुआ--

दे रहा है यहां पर बहोत सारे लोहे के गेट भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक स्कूटी भी खड़ी हुई दिखाई--

मेरे सामने कुछ आदमी खड़े हुए दिखाई--

ऊपर एक मूर्ति लगी हुई दिखाई दे रही है मंदिर के ऊपर टेंट भी लगाया हुआ दिखाई--

दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ--

यहां पर बहुत सारी लाइटिंग भी लगा रखी हैं यहां पर कुछ लोग भी इधर उधर भी घूम रहे हैं।

यहां पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई--

मेरे सामने एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है। फैक्ट्री में दो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट्री नीले कलर की दिखाई दे रही है।

और एक पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं इसकी छत पर बहोत बढ़ी रोशनी दिखाई--

कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं और कुछ लोग बाहर भी घूम रहे हैं।

यहां पर एक दीवार भी दिखाई दे रही है दीवार का कलर --

पार्टी के आगे बाहर एक गार्ड भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है पार्टी को फूलों से--